एक साथ ही बैठी हुई है। यह ब अ म बम भोले बाबा के गले में --

लोग आते है यहाँ पर फूलो की माला मिलती है फूल मिलते है फूल हम लोग खरीदते है सजावट करते है पूजा करते है ।

यह पिंजरे में बहुत ही बड़े कुत्ता है। यह कुत्ता काफी बड़ा है। यहाँ पर बहुत ही सारे और भी जानवर हैं।

फल के पेड़ों में यह बंदर चढ़ कर यह फल तोड़ कर खायेंगे।

यहाँ पर शाकाहारी खाना भी मिलते हैं एवं मांसाहारी खाना भी मिलते हैं। यहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट --